बीच में एक आदमी बैठा है उसने सर पर टोपी बांधी है और एक लाल रंग का दुपट्टा बांधा है चार पीछे आदमी खड़े हैं जिन्हों फूल डाले हुए हैं|

ते हुए कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं। एक यहाँ पर कलर की ड्रेस में एक आदमी बाहर निकल रहा है जो की चश्मा लगाया हुआ है और कुछ लोग पीछे--

इसके चश्में लगे हुए हैं। सबलोग चश्मा लगाके खड़े हुए हैं। नीचे ग्रीन ग्रीन सा कार्पेट बिछा हुआ है। ये एक नया कैफ़े है जो के पीछे कैफ़े भी नजर आ रहा है।

यहां पर चट्टान में दो एक आदमी खड़ा हुआ है और वो आदमी अ सीधे खड़ा हुआ है उसने चश्मा लगाया हुआ है।

बच्चे भी हैं। एक पिंक कलर की साड़ी में एक औरत है जो सर पे चुन्नी ओढ़ी हुई है। पीछे एक घर नजर आ रहा है जिसपे बड़ा सा एक क्रॉस बना हुआ है ऑरेंज कलर का।